और नीचे क्रीम कलर के टाइल्स लगे हुए है सामने पर्दे लगे हुए हैऔर सोफ़ा रखे हुए हैं।

यह एक समुदायक स्वास्थ्य केंद्र है घुमाका है जिसमें पिंक कलर पोता हुआ है।

एक सब्जी मारकेट हैं जहाँ बहोत सारे सब्जिया बिक रही हैं बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं बहोत सारी लाइटिंग लगी हुई हैं।

जो मै होटल रातलास लिखा हुआ है नीचे कार रर और बहुत सारी मोटरसाकिल खड़ी हुई है जमीन मम सू जमीन भी हल्की सी येलो पीली दिखाई दे रही है और बल्ब लगे हुए है।

इसमे बहोत सारा पानी भरा हुआ है यह एक तलाब है जिसमे कुछ टाइल्स लगे हुए है पेड पौधे लगे हुए है सामने बेयर हाउस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है और ग्रीन कलर के बहोत--